यह एक पहाड़ी इलाका है जहां पर तीन पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

उस पर माजा लिखा हुआ है।

सारे मंदिर को सफेद तथा लाल रंग से पेंट किया गया है।

यह एक दुकान का फोटो है जहां पर एक बच्चा पीला टी शर्ट तथा नीले कलर का जींस पहना है तथा एक आदमी काला जींस तथा नीले रंग का टी शर्ट पहना है।

यह एक होटल का फोटो है जिसका नाम साईं राम भोजनालय है।

अह बहुत सारे खाने के सामान भी रखे हुए हैं।

होटल के सामने एक टी_वी भी लगी हुई है।

टी_वी के ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।

एक आदमी खड़ा है तथा तीन आदमी कैफे के अंदर दिखाई दे रहे है इस कैफे का नाम कैफे स्पाइस हैं।

इसके ऊपर सफेद रंग की पेंट चढ़ाई गई है।

तथा खिड़की के बगल में सफेद रंग का पर्दा लगा हुआ है।

दीवार के ऊपर एक बोतल भी रखी हुई है।

दुकान का दरवाजा कांच द्वारा बनाया गया है तथा दुकान में बहोत सारे चॉकलेट एवं अन्य सामान भी रखे हुए--

तथा एक आदमी घूम रहा है इस ऑफिस को सफेद रंग से पेंट किया गया है।

तथा काउंटर पर एक प्लास्टिक भी रखा हुआ है।

हॉल के सीलिंग में लाइट तथा पंखे भी लगाए गए हैं तथा इस हाल में एक खराब कार खड़ी है।

भीड़ भी है यहां पर बहोत सारे पुरुष महिलाएं बच्चे एवं वृद्ध भी हैं।

यह एक ज्वेलर्स की दुकान है। जिसका नाम हरी ओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स है।

दुकान के सामने बहुत सारे स्कूटी एवं बाइक खड़े हैं।

यह एक होटल का दृश्य है।

यह एक होटल है जहां पर बहोत अच्छी लाइटिंग तथा टेबल की व्यवस्था की गई है।

गेट के सामने गुलाबी रंग के अलग से दरवाजे बनाए गए हैं।

होटल के सामने दो बाइक भी खड़ा है।

जहां पर पत्थरों बीच से पानी आके जमा हो रहा हैं।